और वहाँ पे एक ऐ सी दिख रही है। नीचे मेट लगा हुआ है। सबने सूज पहने हैं। योगा और जिम के कपड़े पहने हैं। वहाँ पर एक प्लाई बोर्ड है। दो खिड़कियाँ दिख रही हैं। यहाँ दी एंड करके नाम दिख रहा है कुछ तो दीवार पर --

यहाँ पर एक दुकान दिख रही है दुकान का नाम है माँ चंचला।

वहाँ पर बहोत सारे एपल्स रखे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर घर जैसा कुछ तो दिख रहा है आजु बाजु।

यहाँ पे एक पोस्टर में बॉडी बिल्डर टाइप लड़का सैंडो में है।

नीचे भी दुकान है एक लड़की एक्टिवा मा बैठी है। एक लड़का अंदर जा रहा है। चेक्स की शर्ट पहनी हुई। यहाँ पे एक बाइक है। उसके बाजु में किराना की दुकान दिख रही है।

ऊपर व्हाइट आसमान दिख रहा है। यहाँ साइड रोड से ट्रक आते हुए और कार आते हुए दिख रही है। वहाँ पे ट्रक लगी हुई है।

घांस और पेड़ दिख रहे हैं। ऊपर वाइट आसमान दिख रहा है। वहाँ पे बहोत बड़ी नदी और पीछे बाजु बहोत बड़ा पहाड़ --

ये फोटो में एक बोहोत बड़ी नदी दिख रही है। बोर्ड पे एक व्यक्ति बोर्ड चलाते हुए दिख रहा है। छोटी-सी ये बोर्ड है यहाँ पे पहाड़ --

उसके बाजू में एक हरा पेड़ दिख रहा है फोटो के एकदम नजदीक --